यहाँ पर कुछ नेता हैं जो की खड़े हैं उनके आस पास काफी सारे लोग हैं | एक मेडम ने हाथ में पर्स पड़ा है मास्क पहना है।

लकड़ी है झाड़ है झाड़ पे एक आदमी चड्डा और टी-शर्ट पहन कर चश्मा पहेन कर फोटो खींचा र रहा है | एक पावे हवा में लहराया हुआ है एक जमीन पर है।

यह एक कैफे है जिसमें एक लड़के ने दूसरे लड़को को पकड़ के सेल्फी लिया है लड़के ने गले मे मफलर और टाई पेहना है ब्राउन कलर का स्वेटर है।

रेड कलर की बाइक है | पिंक कलर का बोर्ड लगा हुआ है आसमान है पेड़ पौधे हैं ।

ब्रिज है पानी है एक बा अ एक लड़का और उस बच्चा है।

यह पे एक फिश मार्केट है जिसमें एक आदमी पाइप से पानी भर रहा है। बहोत सारी मछलियाँ हैं जो की अलग-अलग प्रकार की है ।

यहाँ पर यह लड़का है जिसने ग्रीन कलर की च अ टी-शर्ट पहनी हुई है और पतला दुबला पतला सा है काले बाल है।

जिम है एक लड़का है जो कि जिम की गद्दी पर बैठा है पीछे की तरफ माला है और बॉडी दिखा रहा है काले रंग के टी-शर्ट और काले रंग की पेंट पहन कर।

ये सारे जिम के टूल्सेस है वो नजर आ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं।